कच्चा मकान दिख रहा है वहाँ पर रोड भी दिख रहा है मम मकान भी दिख रहा है खंबा दिख रहा है लाईट का--

नीला भी दिख रहा है बहुत अच्छी खूबसूरती भी दिख रहा है और ग्राउंड भी दिख रहा है वहां पर पेट्रोल पंप --